और चम्मच भी है उधर बहोत अच्छा लग रहा है प्लेट में कई स सामान भी है।

अ इधर संतरा के तरह भी लग रहा है उधर बहुत अच्छा लग रहा है।

और गुलाब फूल बहोत मस्त लग रहा हैफुला हुआ है पूरा देखने में बहोत सूंदर लग रहा है।

एक शादी मैरेज हाल है वहां पर बोर्ड भी टंगा हुआ है और कुर्सी भी है और इधर एक --

एक पिंजरा के अंदर एक शेर बैठा हुआ है और देखने में सुंदर लग रहा है और पिंजरा बहुत --